जो ये तारे नजर आ रही हैं और यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ काम करते हुए नजर आ रहे हैं बहोत लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ --

यह मोबाइल दिखाई दे रहा है। वहां पे फोटो खीचते हुए एक व्यक्ति नजर आ रहा है। यहां कुछ लिखा हुआ भी दिखाई --

एक हॉल दिखाय दे रहा है। हॉल में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे है। डांस करते हुए नजर आ रहे है। अभी यहा पे बच्चे डांस सीखते हुये भी नजर आ रहे है। एक व्यक्ति फोटो खिचता हुआ नजर आ रहा है। यहा कुछ लाईटे लगी हुयी दिखाई दे रही हैं। उस पे बच्चे डांस कर रहे --

बहुत सारे केंडिडेट्स दिखाय दे रहे हैंकाम करते हुए नजर आ रहे हैं कुछ समान उन्होंने गमछे ओढ़ रखे हैं। यहाँ कुछ बोरिया पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ कुछ पिलर खड़े बहुत से दिखाई दे रहे हैं और एक चश्मा लगाये रखा उसने हाथ मे कुछ ले रखा है।

यहाँ मुझे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है अपने हाथ मे कुछ वर्कआउट करते हुए नजर आ रहा है यहां बहुत सारे समान दिखाई दे रहे हैं जिम --